और कुछ सब्जियां रखी हुई हैं जैसे कि गोभी हो गई कैरट्स हो गए गार्लिक --

देखने से यह स्कूल का चित्र लगता है और स्कूल का नाम प्रतीत होता है कि रिमिथ वर्ल्ड स्कूल है।

यह चित्र सब्जियों का चित्र है जहां पर अलग अलग प्रकार की सब्जियां दिखाई हुई हैं जैसे कि खीरे गाजर तोरी शकरकंद।

बच्चों का जो एक जो ग्रुप खेलते हुए दिख रहा है वो छोटे बच्चे ही हैं ज्यादा बड़े बच्चे यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं।

जहा पर एक आदमी खड़े होकर अपनी फोटो खींचा रहा है यह गुफा--

यह चित्र चंडीगढ़ के शिशु निकेतन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है।

यह चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप की फोटो है देखने से लगता है कि ये पेट्रोल पंप सेक्टर चार का है।

देखने से प्रतीत होता है कि यह गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर बारह का--

और यह एक बेकरी एंड स्वीट स्पेशलिस्ट की शॉप है।

या फिर होटल के अभी खुलने का समय नहीं हुआ है क्योंकि ए_सी भी बंद है पंखे भी बंद हैं और सारा होटल खाली है और साफ सुथरा है।

देखने से यह एक मीडियम सलून लगता है ना की कोई लग्जरी सलून --

गार्डन के साइड में कुर्सियां लगाई हुई हैं।